यहाँ पे हमें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के आगे की तरफ हमें अभूत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

के हुए है पर यहाँ पर हमें बहुत सारे लाइटिंग भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर हमें एक ट्रॉली भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक फ्रूट्स की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे हमें एक टोकनी दिख रही है जिसमें अंगूर का ढेर रखा हुआ है। यहाँ पर हमें एक फ्रूट्स की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे हमें एक टोकनी दिख रही है जिसमें अंगूर का ढेर रखा हुआ है।

वहाँ पर हमें एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें अलमीरा है और अलमीरा में सभी प्रकार की चीजें रखी हुई है।

पर जंगल में हमें एक मोर दिखाई दे रहा है जो की अपने पूरे पंख फैलाये हुये खडा हुआ है। यहाँ मोर बहुत ही आकर्षक और सुन्दर दिख रहा है।

यहाँ पर हमे एक कन्स्ट्रक्शन साइट दिख रही है जहाँ पर बहोत सारे लोग काम मे व्यस्त दिखाई दे रहे है और उस कन्स्ट्रक्शन साइट के साम--

यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर बादल दिख रहें हैं। नीला आसमान दिख रहा है और पहाड़ भी दिख रहें हैं और यहाँ पर हमें छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी दिख रहें हैं जो की बहुत ही सुंदर लग रहें हैं।

यहां पर हमे एक बड़ी कार दिखाई दे रही है जो की ग्रे कलर की दिखाई दे रही है उसके आस-पास हमे दो कारे दिखाई दे रही है।